जिन्होंने फ्रॉक पहन रखी है।

इस तस्वीर में एक घर के बाहर का ग्राउंड दिखाया गया है।

यह तस्वीर एक जिम की है।

नीचे हरे रंग की मैट बिछी हुई है।

ऊपर बालकनी में गमले में पौधे लगे हुए हैं।

यह तस्वीर एक रेस्टोरेंट की है।

गुलाबी रंग के कपड़े पहन रखें है।

बहुत सारी राख भी पड़ी हुई दिख रही है।

इसने बैग टांग रखा है।

पानी की टंकी रखी हुई दिखाई दे रही है।

चीढ़ियों के पास में ही एक बड़ा सा बैन --

अंदर फूलों से सजावट की गई है।

इस तस्वीर मे मेट्रो स्टेशन दिखाया गया है।

जालीनुमा गेट लगा हुआ है।

और भी सामान रखा हुआ है।

बहुत सारे पोस्टर्स चिपके हुए हैं।

कुछ खंभे भी दिखाई दे रहे हैं।

फूलों की माला दिखाई दे रही है।

इसमें दूल्हा और दुल्हन और अन्य लोग भी खड़े हुए हैं।

इसमें बहुत सारी एसीयां लगी हुई है।

यह तस्वीर एक फल के दुकान की है।

एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

मेज के ऊपर टिशू पेपर रखे हुए हैं।